यहाँ पे काफी भीड़ भी है और एक इंसान कॉफी पी भी रहा है यहाँ पे तीन-चार बॉटल्स रखी हुई है दो डब्बे रखे हैं बिस्किट्स के।

तो ये किसी डांस प्रोग्राम का फंगशान लग रहा है जहा पे एक लड़की पूरे ट्रेडईसहनल वेर मे है और वो शायद डांस कर रही है।

यहां पे आस-पास कितने सारे लोग है यहां के डेकोरेशन काफी अच्छे है और यहां के कैमरे भी काफी बेस्ट क्वालिटी के लग रहे हैं।

ओर कावेरी अ करनाडु मतलब कन्नड मे ये सारा परफोमन्स किया गया है| और सब के सब बोहोत अच्छे लग --

आप देख सकते है यहा पे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है| इतनी अच्छी मूर्ति है| और यहा पे पंडित जी बेठ के पूजा कर रहै है| पूरे पंडाल का सजावट काफी प्यारा लग रहा है और सब कुछ बोहोत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है।

तो ये मछली बाजार है जहाँ पे ये शायद किसी पोखर से किसी तालाब से मछली मार के लाया है और ये यहाँ पे लगा करके बेच रहा है इन्हें।

दृश्य किसी एच.डी.एफ.सी. बैंक की है जो कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे काफी सारे लोग हैं वॉचमैन है।

ये किसी शादी का बहुत अछा फंक्शन लग रहा है जहाँ पे बाहर एक वॉचमैन बैठे हैं और यहाँ पे जितने भी डेकोरेशन हैं वो काफी अच्छे ढंग से किया गया है कोई विवाह भवन है जोकि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है।

किसी बहुत अच्छे मेंस सलून की तस्वीर लग रही है जहाँ पे हर तरीके के हर तरीके के यहाँ के अ हर तरीके के यहां पे सामान सब रखे हुए है हर सुविधा है यहाँ पे काफी भीड़ भी लगी हुई है इस दुकान पे।